और यहां पर बुट शर्ट टंग रही है और टी शर्ट है।

और यहां पर बहुत अच्छे सज रहे हैं और यहां पर में सज रहे हैं।

और यहां पर बराबर में--

सजाया है और यहां पर बाइक खड़ी है और यहां पर एक गाड़ी है।

और यहां पे तीन चार थमले है।

और यहां पर सामने पर लगी हुई है।

पीछे पे कुछ कपड़े पन्नी में पैक हुए धरे है।

और बैटरी रखे है और यहां पर सामने कुर्सी पड़ी है।

और दो दो अपर बोर्ड सा लग रहा है यहां पर।

और यहां पर तीन केले है।

और सामने पे एक जनरेटर रखा हुआ है।

और यहां पर सीलिंग हो रही है पिछे और यहां पर लाइटे लग रही है।

एक जिम है और जिम में लाइट लगी है।

यहां पर मशीन रखी है और डंबल रखे हैं।

और मशीनें लग रही हैं वराणसी की।

यहां पर तीन चार हिरन हैं जो उनके बच्चे खड़े हुए हैं और यहां पर तीन चार डब्बे भी हैं जिसमें--

और हाथी के सुंड पर एक आदमी बैठा हुआ है।

और यहां पर सफेद सी वो शर्ट पहन रखी है और यहां पर एक रहा है।

यहां पर एक दुकान है केले की दुकान है बराबर में और यहां पर एक सामने दुकान है।

बाइक खड़ी है बहोत सारी और यहां पर एक एयरटेल का बोर्ड सा लग रहा है बराबर में और यहां पर --

यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं और यहां पर कुछ--

डंडे भी लगे हुए हैं जिनके ऊपर आग जल रही है और यहां पर बच्चे भी हैं और सामने पे कुछ--

जिसके बराबर में पेडी बनी हुई है और यहां पर एक जीना जा रहा है।

और यहां पर लहंगे मिलते हैं और यहां पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं।

यहां पर फ्रॉक वीरॉक भी मिलते हैं।

कैंची रखी है और यहां पर दो आदमी बाल काट रहे--

यहां पे एक गाड़ी जा रही है जिसमें आदमी बैठे हैं उसमें एक नीली कलर की शर्ट पहना हुआ आदमी बैठा हुआ उसकी गाड़ी की लाइट जल रही है।

इसमें एक कुंडा लगा हुआ है।

है और यहां पर डी_जे रखे हैं।

और नदी के ऊपर एक पूल सा है।

यहां पर एक आदमी फोटो खींच रहा है जिसके नीचे बच्चा है उन्होंने मफलर ग गले में घेर रखा है और सामने पर दो तीन आदमी और बैठे हैं शीशे में चमक रहे हैं।

जैक से तो उठ रही है और यहां पर बहुत अच्छे अच्छे यहां पर सर्विस हुए रखे हैं वो प्रेशर से।

और यहां पर बहुत अच्छी टीन सी गिर रही है ऊपर और यहां पर बहुत अच्छा--

यहां पर र रस्सी से तो ये बांध रखा है और बहुत अच्छा हुआ--